यह एक फिज़ीयोथेरपी एण्ड स्लिमिंग सेंटर है। यहाँ पे बोहोत सारी गाड़ियां रखी गई हैं और यहाँ बोहोत सारे लोग --

यह एक पार्क है। इस पार्क में बहोत बड़ी-बड़ी पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ बहोत सारे फूल भी लगे हुए हैं। यहाँ बहोत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं और यहाँ बच्चे भी घूमने के लिए आए हैं। यह पार्क बहोत ही बड़ा है।

यह एक मिठाई की दुकान है। इस दुकान में बोहोत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं। यहाँ पे बोहोत सारे लोग मिठाइयां खरीदने के लिए आते हैं।

इस यहाँ पे बोहोत सारे लोग पोखरे में नहाने के लिए आते हैं।

और इस मंदिर के बाहर एक लड़का खड़ा है।

यहाँ पे बोहोत सारे लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं।

और यहाँ पे बोहोत सारे लोग उतरते हैं।

ये एक बोहोत बड़ा घर है। यह घर चारों ओर से घिरा हुआ है। इस घर के बाहर में एक बोहोत बड़ा खाली मैदान है।